ये एक दुकान है। दुकान का नाम स्नेक बार हैं। उसके आगे दो आदमी है।

और एक आदमी टोपी पेह ना हैं और वो फोन स फोन मैं किसी से बात कर रहा है। और एक आदमी मास्क पेहना है जो सीधे चल रहा है। और दुकान मैं मिठाई या बोहत सारी है। उसके अंदर बोहत आदमी --

ये भी एक खाने का सामान है जो बहुत ही सुंदर तरिक से सजा हुआ है। ओर उसके बगल मैं एक चटनी है उसमें एक पनीर डा हुआ है।

ये एक जंगल है जंगल में बहुत सारे हिरण है और जंगल में बहुत बड़े-बड़े पेड़ है।

ये एक पेट्रोल पम्प है पेट्रोल पम्प में कुत्ता बैठा है और दो एक व्यक्ति दो व्यक्ति है और एक व्यक्ति आगे जा रहा है एक व्यक्ति खड़ा है।